एसी भी दिख रहा है बुलेट भी दिख रहा है।

ऑरेंज कलर की बैग ली हुई है एक बस दिख रहा है।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

घर का कलर वाइट दिख रहा है एक पंखा भी दिख रहा है।

कई लोहे भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसके अगल-बगल कई घड़े भी दिख रहे हैं।

ईंटा भी नजर आ रहा है एक बांस का टेंट गड़ा हुआ है।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

जिसमें एक लड़के काम करते नजर आ रहे हैं।

आसमान का रंग नीला है।

घरे भी नजर आ रहे हैं।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

आसमान का रंग नीला भी दिखाई दे रहा है।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

घर का बीम ब्लू कलर का पेंट है।

एक लड़का भी दिखाई दे रहा है।

गेट लोहे का न है।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

पेंसिल भी दिखाई दे रहा है कलम भी दिखाई दे रहा है पीला कलर का चित्र भी दिखाई दे रहा है।

कई सामाने भी नजर आ रहे हैं।

चाय एप्स का पोस्टर दिखाई दे रहा है।

एक बालती भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में सड़क दिखाई दे रही है।

जिसके बगल में एक दुकान भी नजर आ रहा है।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

एक नाव् भी दिख रहा है।

मूर्ति का कलर ब्लैक है।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है जिसके अंदर तीन तकये दिख रहे हैं।

कुर्सी का कलर भूरा दिख रहा है।

एक लड़का वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है घर के अंदर डिजाइन बने दिख रहे हैं।

घर का कलर वाइट दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक सड़क दिख रहा है जिसके--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

जांच केंद्र भी दिख रहा है तारे भी दिख रही है।

कई गाड़ियां भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें एक लोहा का गेट लगा हुआ है घर का कलर हरा दिख रहा है।

लोहा पर के गेट में कलर लगा हुआ है।

हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

आसमान भी दिखाई दे रहा है आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है एक बच्चे भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में घर दिख रहा है जिसके अंदर कई सामाने दिख रहे हैं।

लाइटें बढ़ रही हैं गर्ल्स वेयर का पोस्टर दिख रहा है बैग भी नज़र आ रहे हैं कपड़े भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक सड़क दिख रहा है।

सड़क के बगल एक घर दिख रहा है।

घर के बाहर तार भी दिख रहे है आसमान भी दिखाई दे रहा है आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक खेत दिख रही है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है।

ये घर भी दिखाई दे रहा है।

घर के अंदर कई सामान भी दिख रहे हैं।

लाइटें बढ़ रही है बलून दिख रहे है।

पंखे दिख रहे हैं कूलर दिखाई दे रहा है।

हरे भरे पैर पोथ दिख रहे हैं।

औरत भी नजर आ रहे हैं सब डांस कर रहे हैं।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

जिसमें कई ब्रेंच भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक रोल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में क्रोध दिखाई दे रहा है।

अंदर सामाने बिक रही है।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

इस तस्वीर में एक पार्क दिखाई दे रहा है।

जिसमें कई आदमियां काम कर रही है।